उसके सामने ही काफी सारे पेड़ पौधे हैं।

छोटी छोटी दिवाले हो रखी है जिन पर काला और पीला कलर --

सूरज की रोशनी भी दिख रही हैं तालाब का पानी बिल्कुल साफ है।

दीवार पर सामने एक बड़ी पेंटिंग लगी है।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

जिसमें कुछ मजदूर और कुछ मिस्त्री काम करते दिखाई दे रहे हैं।

यह काफी लंबा चौड़ा है।

और कुछ पर्दे लटके हैं।

स्टॉल पर नीले कलर का कपड़ा पड़ा है।

एक टिन की लंबी छत भी है और कुछ पिलर भी हैं।

दराज में भी दवाइयों की शीशियां हैं और काउंटर में भी दवाइयों की शीशियां हैं।

अंदरली साइड एक कुर्सी धरी दिखाई दे रही है।

पांच जैसे गेट दिख रहे हैं।

इस फोटो में एक नाई की दुकान दिखाई दे रही है।

काफी सजावट की गई है गेट पर भी गुब्बारों से सजावट की गई है।

अंदर ली साइड लाइने से कुर्सियां बिछाई गई है।

एक साइकल पे एक आदमी दिख रहा है और एक दीवाल है जिस पर कुछ लिख--

एक व्यक्ति कुर्सी पर बैठा है उसके सामने काउंटर है।

जिस पर कुछ फाइलें और कुछ और भी रखा है।

दीवार पर एक एल_इ_डी लगी है और छत पर पंखे लगे हैं।

ये मुर्गे काफी हद तक बड़े और लंबे हैं।

यह किसी कॉलोनी का फोटो लगता है जिसमें काफी सारी बीच में पेड़ लगे हैं और--

काफी सारी प्लेट रखी है और एक व्यक्ति--

दीवाल पर और छत पर काफी सारे--

कढ़ाई में चाऊमीन भी है।

और आगे कुछ पेड़ पौधे भी हैं।

छत पर एक पंखा लगा दिखाई दे रहा है।

और एक ट्रॉफी भी रखी है।

व्हाइट और ग्रीन कलर हो रखा है।